यह एक फिसलपट्टी हैं जिसके आखरी हिस्से पर तीन लड़कियां बैठी हुई है।

यह एक भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ कल्पक कामदेव बिमहा का बोर्ड हैं बगल में सूचना बोर्ड तथा यह शाखा परिसर सी. सी. टी. वी. कैमरे की निगरानी में है।

एक चोक है यहाँ जहाँ महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनी हुई है जहाँ घोड़े पर बैठे हुए है आसपास तार की मदद से रेलिंग लगी हुई हैं।

ग्रोसरी की शॉप जहाँ अंदर की साइड एक फ्रिज रखा हुआ है जिस पर कोका-कोला ल लिखा हुआ अंदर बहोत सारी कोल्ड्रिंक्स की बोटल रखी हुई है जहाँ माजा स्प्राइट फीज आदि --